और इन लोग के ऊपर अह बहुत सुंदर सा हाफ जैकेट टाइप का--

यहां पर एक अ खुला सा एरिया है। अ--